मंदिर के आगे में एक बड़ा सा गेट है । मंदिर के चारो बगल में गेट इ जैसे देख रहे हैं । आगे में लाल जैसा एक पाया है । जिसमें रेड कलर से इसे कलर किया गया तथा मंदिर के नीचे फर्श को अच्छे से प्लास्टर की गई --

ये एक मछली की दुकाने लग रही है मछली मुर्गे की यहां पे काफी सारी मछलियां परी हुई हैं।